बाहर में कैमरा भी लगा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल का दृश्य है जो देखने में बहोत सुंदर लग रहा है ।

इस चूड़ी हाउस का नाम सुप्रीम चूड़ी हाउस है।

सुप्रीम चूड़ी हाउस के नीचे लिखा हुआ है असली शाखा पोला एवं फैन्सी चूड़ियां--

मंदिर के ऊपर में एक चोंगा भी लगा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है।

यह एक प्रयां केंद्र का दृश्य है।

दुकान के ऊपर में भी एक बोड टंगा हुआ है।

यहां एक झंडा दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे आदमी भी खड़े हैं।

यहां पर बहोत सारे लेडिस और जेन्स खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक पंखा भी लगा है।

इस दुकान में एक कैमरा भी लगा हुआ है।

यहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे है और यहां पानी भी है।

यह एक सड़क का दृश्य है।

यहां पे दो आदमी खड़ा और एक आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ खड़ा है।

यहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

यहां एक चौकी भी है और एक कुर्सी भी।

नीचे में मार्बल भी लगा हुआ है।

यहां पर एक शीशा भी लगा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

अंदर में भी दो आदमी बैठा हुआ है।